कुछ आदमी खड़े हैं और खेत में अपना काम कर रहे हैं।

कुछ लोग खड़े हैं और बहोत अच्छी डेकोरेशन की हुई हैं।

लोग बैठे हैं और कुछ लोग खड़े हैं।

यह एक घर हैं इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हैं।

एक ए_सी दिखाई दे रहा है फर्श पर एक पोलोथिन पड़ा हुआ है।

इसके बाहर एक गार्डन बना हुआ है जिसमें घास और कुछ छोटे पेड़ लगे हुए हैं।

जिसके ऊपर गुरुद्वारा साहिब बाबा विश्वकर्मा जी लिखा हुआ है।

अलमीरा के अन्दर बहुत सारे टॉय रखे हुए है जिनमें डाल्स गन --

अंदर योगा करने के लिए कुछ मशीने रखी हुई है।

और चेयर के सामने शीशा लगा हुआ है।

इसके बाहर दो गाड़ियां खड़ी हैं।

टेबल रखा हुआ है टेबल के ऊपर बॉक्स के अंदर बहुत सारा सामान है।

यह एक हट बनी हुईं हैं हट के बाहर ग्रिल लगी हुईं हैं सड़क पर--

जिसने ब्लू कलर का कपड़ा लपेट हुआ है।

नाई उस बैठे हुए आदमी की--

एक शीशा और टी_वी दिखाई दे रहा है।

अलमीरा के साइड में दो पानी की बोटल और एक स्टील की कैटल रखी हुई है।

और इसके अंदर पोर्ट भी पड़े हुए हैं एल_सी_डी भी दिखाई दे रही है।

यह पेंट बड़ी बाल्टी और छोटी बाल्टीयों में रखे हुए हैं।

और यह पीले रंग की है।